यहां पर कुछ दुकानें भी बनी है ।

अं इस फोटो में सामने कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं।

और पेड़ भी नजर आ रहा है।

और गमले भी दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में यहां पर एक प्लेटफॉर्म नजर आ रहा हैं।